एक बड़ा सा हॉल है। हॉल में कुछ ऑटो रिपेयर हो रहीं हैं ढेर सारी स्कूटी व बाइके खड़ी हुई हैं।

एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के किनारे एक बच्चा है पीछे--

एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का घर है जिस पे बड़े से काले रंग के गेट हैं। घर के छत पे ऊपर एक लकड़ी में बांधे हुए बड़े-बड़े बाजे लगे हैं।

सामने एक शी शीशे के चारों तरफ़ लाईटे लगी हुई है सामने दो कुर्सियां है ब्राउन रंग की बड़ी बड़ी |

एक बड़ा सा हॉल हैऊपर नीले रंग का बोर्ड है और हॉल की जमीने टाइल्स की बनी हुई है।

एक समुंदर है। समुद्र में एक बड़ी सी बोट है। बोट एक रस्सी से बंधी हुई है जो कि --